कुछ लोग बैठे है जहा बैठे है वहाँ की मेट लाल कलर की है और नीले कलर की है।

ये एक दरबार है दरबार में भगवान की मूरत है मूरत के सामने चार लोग बैठे हुए है।

यहाँ एक खाली सुनसान--

लेकिन यहाँ लाइटिंग व्यवस्था--

यह एक हॉल है हॉल मे कुछ कुर्सी मेजे पड़ी हुई है हॉल मे लाइटिंग व्यवस्था बढ़िया है।